सामने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे के पत्ते काफी हरे हरे दिखाई दे रहे--

आगे एक गेट दिखाई दे रहा है गेट काले रंग का दिखाई दे रहा है उसकी पाली--

ए_टी_एम के पास बगल में एक सीढ़ी जाती हुई दिखाई दे रही है।

मॉल के नीचे काफी सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है ऊपर लाइट भी चलती हुई दिखाई दे रही है यहां पे एक बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है पास में काफी सारे दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान में काफी सारे पोस्टर लगे हुए है जिसमे की तस्वीर अ दिखाई दे रही है साइड में एक पार्लर भी दिखाई दे रहा है जहा पे काफी सारे पैकेट्स भी दिखाई दे रहे--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

एक बाल्टी दिखाई दे रही है ऊपर बहुत बड़ा आसमान दिखाई दे रहा है आसमान काफी ब्लू रंग का दिखाई दे रहे हैं।

वहां पे भी कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं एक गड्ढे गड्ढे के पास खड़ा हुआ लड़का दिखाई दे रहा है जिसने लाल टी शर्ट पहना हुआ है।

एक बिल्डिंग दिखाई है। बिल्डिंग का काम चल रहा है।

एक बहुत बड़ी मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद के ऊपर सफेद--

वह दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है उसमें लाल अक्षरों से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बंदा काउंटर के बीच में खड़ा है एक बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

और पक्की सड़क दिखाई दे रही है एक ऑटो रिक्शा में एक बंदा दिखाई दे रहा है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं।

ठीक से उस रखी गई है सोकेस मे और काफी--

बोटिंग बोट भी चल रही है बोट में काफी लोग बैठे हुए भी दिखाई दे रहें हैं।

और ओ सामने एक मकान जैसा भी कुछ दिखाई दे रहा है।

और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा आसमान में काफी सारे बादल भी दिखाई दे रहे सामने एक मकान दिख--

पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान एकदम ब्लू दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के सामने काफी बच्चों के खेलने की चीजें भी दिखाई दे रही है।